फुल-पत्तिया दिख रही जो की बहुत ही सुन्दर लग रही है ऊपर खुला हुआ आसमान दिख रहा जो की बहुत ही बढ़िया लग रहा हैं। हरे-हरे पेड़ दिख रहे जो की बहुत ही अच्छी लग रही बहोत ही सुंदर बहोत ही प्यारे --

जैसा की हम देख सकते है सामने हमें एक बहुत ही अच्छी मूर्तिया बनी दिखाई दे रही है मुर्तिया हमको बहुत सारी दिख रही है मूर्ति हमको भगवान की बनी दिख रही है जो की बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुन्दर मुर्तियां दिख रही है।

शीट दिख रही है जो की वाईट कलर दिख रहे रही है जो की बहुत सुन्दर लग रही है और बहुत ही प्यारी लग रही है हमको पीछे पेड़ दिख रहे है जो हरे-हरे दिख--

हम देख सकते है सामने बहुत सुदर नजारा दिख रहा है हमको क्लासरूम दिख रहा है जिसे क्लास का होल दिख रहा है जिसमें हमको बच्चे दिख रहे है जो की स्कूल जके बच्चे दिख रहे है जिन्होंने लाल शर्ट पेहन रखा है जो की हमको लाल चेक्स दिख रहा है नीचे पेंट पहनी है जो की ग्रे कलर की पहेन रखी है।

एक मैडम है जिसके पाँव पड़ते एक लड़की दिख रही है जिसने पीला कलर का सूट पहना हुआ है मैडम के उसके पीछे एक आदमी खड़ा है जो की सर दिख रहा है जिसने चश्मा लगा रखा है कोट पहना रखा है।

जेसा की हम देख सकते है सामने हमको एक सुन्दर नजारा दिख रहा है हमको हॉल दिख रहा है हॉल में बच्चे दिख रहे है जो की बहुत सारे दिख रहे है यह बच्चे हमको काम करते हुए दिख रहे है जो की बहुत हि बढ़िया लग रहे है बहुत ही सुन्दर लग रहे है ।

एक नर्स दिख रही है सिस्टर दिख रही है जो बच्चो को पढ़ाते दिख रही है जो की बहुत ही अच्छी लग रही है बहुत ही सुन्दर लग रही है पीछे दीवार दिख रही है जो की सफ़ेद दिख रही है हमको पिलर दिख रहे है जो की आधे सफ़ेद और आधे गुलाबी दिख रहे है बहुत अच्छी बहुत सुन्दर और बहुत ही प्यारी लग रही है।